इस चित्र में हम देख सकते है की यहाँ पर कृष्ण और राधा की मूर्ति देखी दे रही है जहा पर कृष्ण जी बासुरी बजाते हुए नजर आ रहे है और राधा जी उनके सर अ--